सामने एक दीवार दिखाई दे रही है।

मैदान में एक मेज पड़ी हुई है उसे पर कुछ रखा है।

यह एक ज्वेलर्स शॉप है।

दीवार की साइड में भी लकड़ी के कुछ फट्टे।

और एक नर्स खड़ी हुई हैं ये य यहां की दीवार पीली है।

और इनके पीछे लोहे की खिडकी जंगले लगे हुए है।

यह व्यायाम करने की जगह है यहां पर बहुत सारे आदमी व्यायाम कर रहे हैं और इसमें एक बोर्ड भी लगा है बोर्ड हरे रंग का है उस पर व्यायामशाला लिखा है साइड में एक--

साइड में एक घर सा बना हुआ है।

और द उ झालर लग लगाई गई है ऊपर से लाइट चमक रही है।

और पर्दे भी लगाए हुए हैं।

यहां पर हवन हो रहा है हवन से धुआं निकल रहा है उम्म चारों तरफ को बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

एक औरत भी बैठी हुई है एक आदमी ने पिंक कलर की टी शर्ट पहनी है दूसरे ने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हैं एक--

साइड में एक पुस्तकालय है।

पेड़ पौधे लगाने के लिए एक वो अह घेरा बनाया हुआ है

यहां यहां पर एक कुछ लकड़ी का सामान पड़ा हुआ है।

यहां कुछ व्यक्ति काम कर रहे है इन्होंने लकड़ी के पट्टे बिछाए हुए है।

एक पंखा भी रखा हुआ है ये साइड में एक डंडा भी खड़ा है।

इसके पीछे कुछ सामान पड़ा हुआ है।

ये इधर उधर बहुत सारा सामान रखा है।

हरे रंग की बस है पीले रंग की पट्टी है दो पहिए हैं।

इसकी खिड़कियां कांच की है बराबर में पेड़ दिखाई दे रहे--

यहां पर एक खंभा दिखाई दे रहा है उसकी दीवार पीली है नीचे की दीवार भूरे रंग की है एक नल भी है उसके पीछे एक आदमी पानी--

ऐं फोटो फ्रेम लगे हुए हैं और एक अल --

यह फूलझड़िया छूट रही है यहां पर--

और साभी लगा हुआ है।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

इसकी छत लाल रंग की है।

इस पर डिजाइन बना हुआ है।

यहाँ पर कुछ अ बच्चे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने जूते पहने हुए हैं टी शर्ट पहनी हुई है पैंट पहनी हुई है।

और सड़क दिखाई दे रही है सड़क पर सफेद रंग की पट्टी है दूर से घास--

यहां पर एक रैक है उस पर बहोत सारा सामान रखा है।

अह डियो है और लाइनर है साइड में कुछ डब्बे रखे हैं।